इस चित्र में हमें दर्शाया गया है कि यह चित्र किसी पेट्रोल पंप का चित्र है।

इस चित्र में हमें दर्शाया गया है कि यह चित्र किसी कार्यालय का चित्र है।